आप देख रहे हैं दो इंजीनियर खड़े हुए हैं माइक रखे हुए हाथ में कुछ बुक्स भी रखे हुए --

और यहाँ पर शायद कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है| एक यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है और इनके पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं और कई सारे यहाँ पर ट्रक भी है ।

यह एक दुकान है आप देख रहे है इस दुकान में काफी सारी चीजे रखी हुई है बहुत सारे लोग भी है यहां पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है एक --

--देख रहे हैं यहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं यहां-यहा पर काफी सारे मछलियां रखी हुई हैंऔर यहां पीछे दीवार पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।